इस इमेज में यहां पर दो वर्कर दिखाई दे रहे है जिनके हाथ में हथौड़े भी नज़र आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक अमूल आइसक्रीम लंच दिखाई दे रहा है बाहर गेट भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है जिसपे सिरे में एक प्रो लिखा नजर आ रहा है।

इस इमेज मे यहां पर एक पूल दिखाई दे रहा है जहां पर एक बड़ा सा पोस्टर लगा नजर आ रहा है।

इस इमेज में सामने एक काउंटर दिखाई दे रहा हैं जहां पर देखिएगा ड्रिंक की बॉटल्स रखी नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक अं किट पहन कर डॉक्टर खड़ा है और एक लड़की भी नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर खूबसूरत वादियां दिखाई दे रही है जहां पर पेड़-पौधे लगे नजर आ रहे हैं।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

इस इमेज में यहां पर एक बड़ा सा होटल दिखाई दे रहा है जहां पर टेबल कुर्सी लगे नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर दो तीन स्कू अह ऑटो रिक्शा खड़ी है और बस भी नजर आ रही है।

इस इमेज मे यहां पर इमारतें दिखाई दे रही है बीच में एक फाउंटन भी चलता नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक शादी का गेट सजा दिखाई दे रहा है और बाहर एक लड़का भी खड़ा नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक कपड़ों का शोरूम दिखाई दे रहा है और सामने शीशा भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है और खातीपुरा लिखा नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक बस स्टैंड दिखाई दे रहा है सामने एक लड़का खड़ा नजर आ रहा है।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

इस इमेज में सामने यहां पर एक धर्मशाला दिखाई दे रही है और एक बड़ा सा गेट भी नजर आ रहा है।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

इस इमेज में यहां पर फूलों के हार दिखाई दे रहे हैं जो देखने में सुंदर लग रहे हैं।

इस इमेज में यहाँ पर एक जिम दिखाई दे रही है जहाँ पर एक एक्सरसाइज करने की मशीने नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर सोफे और टेबल रखे नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में सामने मस्जिद दिखाई दे रही है और यहाँ पर एक चिकन शॉप भी नजर आ रही है।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

इस इमेज में यहां पर बड़ा सा मॉल दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ लोग घूमते नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक गेट गुब्बारों का सजा दिखाई दे रहा है जहां पर आदर्श सुपर मार्केट लिखा नजर आ रहा है।

इस इमेज में सामने एक पानी का एक तालाब दिखाई दे रहा है और यहां पर एक पेड़ भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर कुछ फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं और नीचे बास्केट भी रखा हुआ नजर आ रहा है।